एक पोस्ट बॉक्स भि लगा हुआ देख पा रहे है जोकि दीवार पर लगाया गया है अन्दर मे कुछ समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें एक घर दिखाई दे रहा है जोकि देखने काफी बड़ा है इसका बरांदा भी हमे बड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर हम--

इस द्रश्य में हमे एक पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा हैं जिसका पोस्टर भी हम ऊपर पर लगा हुआ देख पा रहे है। यहाँ दीवारों पर भी कई सारी सूचनाए चिपकी हुई नज़र आ रही हैं बाहर में हमे--

हमे एक पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा है जिसका पोस्टर हमें बहार एक गेट पे लगा दिखाई दे रहा है और साथी दीवारों पर अन्य सूचनाएं भी लगाई गईहे देखने में ये अदृश्य सा लग रहा है इसमें --